एक ग्राउंड है जहां कुछ लोग चेयर टेबल चेयर में बैठे हुए हैं बहुत सारी लाइटें लगी हुई है स्टेज बना हुआ है लाइट डीजे लगी हुई है।

यह एक जिम अकेडमी है एक बड़े से पोस्टर लगे हुए हैं उसमें फ्रेंड जीम करके लिखा हुआ है बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं पावर फन स्लिम स्पीड यहां बहुत सारी मिरर लगी हुई हैं पोस्टर लगे हुए हैं जिम की बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

वर्कर सब अपने काम में लगे हुए हैं नीचे दो खड़ी है वाइट कलर की--

काफी खूबसूरत है सामने एक एक कांच का दरवाजा है एक बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है ब्लैक कलर उसमें वाइट कलर से मेडी वन वेलनेस लिखा हुआ है।

उसके बाहर एक वाइट कलर का पोस्टर लगा हुआ उस पर लिखा हुआ है सरकारी नौकरी के लिए --

रेड कलर की बंगलो साइड में ओयो का एक पोस्टर दिया हुआ है।

साइड में बहुत सारे बेंच रखे हुए हैं लकड़ी के बेंच रखे हुए हैं।

ये दो बेंच रखी हुई है बैठने के लिए दो सीटर दिया गया है।

यह एक बड़ा सा स्कूल है फील्ड में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं प्रेयर के लिए खड़े हैं स्टेज के ऊपर कुछ टीचर्स खड़े हुए हैं जो माइक से कुछ बोल रहे हैं पीछे सरस्वती जी की मूर्ति मूर्ति बनी हुई है बच्चे सब--

यह बड़ा सा डक बना हुआ है जो अपने चोंच खोले हुए है सामने--

एक पार्क है यहां बहोत सारे झूले लगे हुए हैं साइड में साइड में कुछ पेड़ भी है।

काफी बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

सैलेड्स में गाजर है मिर्चे हैं प्याज है।

दाल है दाल के ऊपर धनिया डाल के सर्व किया गया है।

दो तीन बाइके लगी हुई है बगल में एक झोपड़ी बना हुआ है ब्लैक कलर के--

सूरज की रोशनी है दिन का टाइम है।

दो तीन ब्लू कलर के बेंचियां रखीं हुई हैं ए_सी लगी हुई टेबल फैंस लगी हुई हैं।

एक काउंटर है दो दरवाजे दिख रहे हैं व्हाइट कलर के।

एक आदमी बैग लिए सूटकेस लिए खड़ा एक बाइक लगी हुई है।

दो चार आदमी बाइक के सामने खड़े गाड़ी के सामने खड़े हैं बस के--

पार्क जैसा बना हुआ है साइड में एक स्कूटी खड़ी हुई है।

ब्लू कलर के बड़े से पोस्टर में लिखा हुआ है ए_टी_एम है ये केनरा बैंक का ए_टी_एम है।

एक एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है साइड में--

यह एक कोई दुकान है बॉडी शॉप करके--

दुकान है दुकान के बाहर काफी सारे लोग खड़े हैं।